और यहाँ पर कुछ औरतें भी हैं जो योगा कर रही है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर --

एक बड़ा सा पोस्टर है जिसके ऊपर कार उतरा हुआ है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बक्से रखे हुए हैं।

और एक पोस्टर लगा हुआ है सफेद कलर का जिस पर हिन्दी में कुछ लिखा हुआ है।

और यहाँ पर पेंसिल है पेन है और रबर है।

एक बच्चा भी है शिव की मूर्ति है और दीवार पर कृष्णा की तस्वीर भी है ।

और यहाँ पर फूकों से सजाया हुआ ये लाल और सफेद कलर के --

और एक टी_वी भी है और एक बड़ा सा काँच लगा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और ये एक मंडी है ।

और यहाँ पर एक कपड़ों की दुकान है और एक बड़ी सी बिल्डिंग है जो सजी हुई है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक कपड़ों की दुकान है और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं।

यहाँ पर एक एसी भी लगी हुई है और बहुत सारी नीले कलर की कुर्सियाँ भी रखी हुई है।

और यहाँ पर मम चार कुर्सियाँ भी है जो काले कलर की है ।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर दिवाली का पोस्टर लगा हुआ है इस दुकान पर बहुत सारे लोग हैं ।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर दो तोते हैं और यहाँ पर एक --

आदमी भी है जो चश्मा लगाया हुआ है ।

छोटेबड़े से पिंजरे में कैद है।

एक बड़ा सा झाड़ है और एक घर भी है ।

जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी ड्रेसें भी है ।

और यहाँ पर सूटरें भी रखे हुए हैं।

और यहाँ पर एक तीसी बड़ा सा खंबा है ।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर बहोत सारे पौधे हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक आदमी है ।

ये पहाड़ के पास ठहरा हुआ है ।

यहां पर एक क्लास है जिसमें कराटे सिखाए जा रहे हैं।

एक बोर्ड पर लिखा हुआ है ओपो फ़ो --

और यहाँ पर एप्पल फोन भी की पोस्टर लगा हुआ --

और यहाँ पर दो हाथियों की मूर्तियाँ हैं ।

यहाँ पर कपड़ों की दुकान है और यहाँ पर बड़ी सी बिल्डिंग है यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक मॉल है जहाँ पर बहुत सारी कुर्सियाँ रखी हुई है ।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक पत्थरों का घर है ।

और कुछ दरख्त भी है बड़ी-बड़ी बंडी भी है ।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर --

बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी मकान भी है और कुछ दरख्त भी है ।

यहाँ पर पार्किंग है इसके अंदर बहुत सारी कारे हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर दो दुकानें हैं ।

यहाँ पर एक दुकान है जिसके अंदर --

और कैड़बेरी है और यहाँ पर एक छोटी सी फ्रिज है ।

यहाँ पर कोका-कोला भी रखा हुआ है ।

यहां पर एक आदमी है जो फोटो खीचा रहा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत सारी अच्छी सजावट है ।

और यहाँ पर टेबले भी है जो नीले कलर की है ।

और यहाँ पर एक बच्ची बैठी हुई है ।

और बहुत सारी सूटें पैक कर कर रखी हुई हैं ।

यहाँ पर कुछ कपड़े पैक कर कर रखे हुए हैं और यहाँ पर --

यहाँ पर एक दुकान है जिसमें --

यहाँ पर कुछ पेन्ना भी रखे हुए हैं ।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है ।